देखने से ये कोई स्पोर्ट्स कॉलेज लग रहा है और यहां काफी सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं।

इस मंदिर में एक और फाटक है जो कि पीछे की तरफ --

यह प्रतिमा गोरखपुर मेडिकल कालेज के बीच में लगी हुई है।

इसको देखकर लग रहा है ये फोटो एक मेडिकल कॉलेज के बीच चौराहे का है यहां पे एक सफेद रंग की स्कार्पिंग --

बैंक के सामने कई मोटरसाइकिलें (motorcycles) खड़ी हैं और एक व्यक्ति संभवतः बैंक में जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है।

इसके अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग के सामने काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं कुछ लोग भी इस पे बैठे हुए हैं।

जो जंजीरों से बंधी हुई है। ये कार कल संभवतः इंजन बनाने के लिए आई --

सामने की तरफ एक मकान बना हुआ है। इसपे (इसपर) भारतीय डाक का एक बोर्ड लगा हुआ है।

वीवों एक चाइनीज कंपनी है जिसके फोन काफी सुंदर होते हैं और ये चलने में काफी दमदार होते हैं।